और ऊपर छत पे जो फर्श कलर की है। बहोत सारी कुर्सिया भी पड़ी। कुर्सियों पर व्यक्ति बैठे हुए हैं। इन लोगों ने चौखाने की एक शर्ट भी एक लोग पहने हुऐ हैं। औरते भी हैं।

एक व्यक्ति पानी पी रहा है। उसने शेट् टी शर्ट और और पेड़ भी नजर आ रहा है।

यह किसी का उम कमरा लगा रहा है। इस कमरे में बेड पड़ी हुई है। बेड पे बेडशीट गद्दे-वद्दे नहीं पड़े हुए हैं। विंडो विंडो बंद है।

यहाँ किसी की शादी वादी जैसी टेंट वेंट लगी हुई है। बहुत सारी कुर्सियाँ भी पड़ी हुई हैं।

पार्क मे बोडीया भी बनाई गई घास की। इसमे फूल लगे गुलाब के पेड़ लगा गुलाब के फूल भी आ रहे। इस तरफ भी रास्ता बनी हुई है। इस तरफ भी तरह फूल लगाए गए हैं।

चौक है इस चौक पे झंडे लहराए जा रहे हैं चौक को अच्छी तरह से सजाया जा रहा है और आगे की तरफ हम --

किसी का मकान लग रहा है | मकान में जो खिड़कियां लगी हुई हैं वो खिड़किया सारी लोहे की और अंदर से बंद हैं ।

का मन्दिर लग रहा है मन्दिर व्हाइट कलर का है मन्दिर के ऊपर एक झंडी भी लगी हुई है।